जो की नव-निर्मित है यहाँ पे अनेको लोग में लाइन लगा के दर्शन के लिए खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

जिसमें एक व्यक्ति उसको अपना अपना बारे में उसको समझा रहा है औ --

अ जिसके बाहर छपरी रखा गया है और बहुत सारे लोग इसके आगे-पीछे भ्रमण कर रहें हैं।

और इसी उद्यान के आ बगल में एक छोटी पतली सी सड़क बनाई गई है और इसके सड़क के बगल में लाल और नीले और इसको रंग से रंगा गया है।

क्रिश्चियन्स खड़े हैं और यहाँ पे एक फादर अपने परक्रमा कर रहे है।